यह एक बैंक की फोटो है यहां पे चार ए_सी यां लगी हुई है और चैनल वाला गेट लगा हुआ है जिसके पास एक दुकान भी लगी हुई है।

ब्लैकबोर्ड पैंपलेट लगा हुआ है यहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और एक स्कूटी है।

की ए_टी_म से पैसे निकलवाने के लिए अंदर बहोत सारे लोग है जो ए_टी_म से पैसे निकाल रहे है।

चाँद किसी रोशनी दिखाई दे रही है या हल्की सी--

यहां एक कैलेंडर लगा हुआ है स्कैनर लगा हुआ है दो तीन आदमी एक ल लड़की है।

आसमान एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है तार भी लगे हुए हैं बहोत सारे घर बने हुए हैं आसपास।

रखी हुई खम्बे टंगाए हुए हैं यह एक चर्च की फोटो है जीसपे प्लस का निशान दिख रहा है।

यहां पे बहोत सारे बिल्डिंग बनी हुई है यह एक मेन सड़क की फोटो है ये सी_सी_टी_वी कैमरे से ली गई है।

सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी और एक हेलमेट लगा हुआ लड़का आ रहा है यहां बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई है स्कूटियां पार्क की गई है।

यहां पे छोटे से बड़े बच्चों तक की कॉपी किताबें बुक पासबुक --

और यहां पे व्हाइट कलर की दीवार बनी हुई है यहां पे काफी किताबें रखी हुई है पानी की बोतल रखी है।

और कोई भी बैठे हुए हैं लोग बैठे हुए हैं पेड़ पौधों पे कलर किया हुआ है घास भी सूखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे एक भगोना रखा हुआ है एक पीतल का एक स्टील का--